आ यहाँ पर फूलो की माला है तो आ यहाँ पर एक फूलो की माला रखी हुई है बहुत मोटी है बहुत बड़ी है।

और खुला आसमान हैं आसमान दिख रहा हैं और बहुत बड़ा गार्डन हैं जिस मे पूरी हरियाली हरियाली हैं ।